यहाँ पे हमे तीन मुर्तिया नज़र आ रही है ये तीनो मुर्तिया हमारे देश के महान व्यक्तियो की मुर्तिया है।

यहाँ एक बैंक नज़र आ रही है हमे जिसका ए जिसके दो तीन दरवाजे है जिस पे अ शीशा लगा हुआ है हमे यहाँ पर एक ए. टी. एम. भी नज़र आ रहा है इसके सामने--

ये एक होटल के रिसेप्शन का सीन है जहाँ पे हमे तीन घड़ियाँ नज़र आ रही है जो एक--

यहाँ पे हमें एक बैंक नजर आ रही है बैंक के बाहर बैंक के बाहर भीड़ है कार खड़ी हुई है और एक दुकान है जिसमे शटर पड़ा है बैंक में चैनल लगा है काले कलर का ऊपर बिल्डिंग बनी है जिसमे ग्रिल लगी हुई है।

यहाँ एक पार्क नज़र आ रहा है पार्क में जो मैदान है उसमे पूरी मिट्टी-मिट्टी है और कोई घास-वास नही है यहाँ पे काफी तरीके के झूले लगे हुए है बाउंड्री है यहाँ पे काफी ऊंची सी जो हरे कलर से पेंट की गई है।

बिजली के वायर है पिल्लर है यहाँ पे और एक सर्किल बना हुआ है जिसमे छोटे-छोटे पौधे एक बड़ा-सा पेड़ है इसमें कुछ पत्तीया है और ग्रिल लगे हुए है झाड़ियाँ बनी हुई है यहाँ पे--